एक मॉल का दृशय दिखाई पड़ रहा है जिसपर एक्ससीलेटर एक ऊपर जाता हुआ है और एक नीचे आता हुआ --

और हरी-हरी घास है हरी-हरी पेड़ है सामने पहाड़ दिखाई दे रहे है।

एक लाल कलर का गमछा ओढ़ रखा है कुछ लकड़ी से कुछ बना रहे है बिल्डिंग बना रहे है।